पोल है फिर तार है फिर निचव मे मिट्टी डेल हैं ।

घर है खपरा के घहर है ऊपर में अकराल लगल है फिर बास्केट अ- ह- म--

बुलदिङ म लोहा से घेराव है बोर्ड लगल है खिड़की हैं ।